इसे मेन चेस्ट का काम होता है। यह बॉडी बनाने के लिए --

यहाँ पर काफी सारे टेम्पू भी दिखाई दे रहे हैं जो वेट कर रहे हैं सवारी का।

यह एक एक्सिस बैंक का एटीएम लग रहा है जहाँ पर काफी व्यक्ति खड़े हैं काफी बाइके वगैरह भी खड़ी हैं।

छतरी वगेरा लग रही है एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है ये शायद केमपिंग हो रही है ये केमपिंग शायद बाहर की है। पीछे पहाड़ लग रहे है देखने मे --

देखने मे एक लाइब्रेरी लग रही है जहां पर काफी सारी बुकें रखी हुई है काफी सारी महिला और व्यक्ति भी हैं।

यह एक बॉय्ज जिम है। इसमें व्यक्ति अपने से सेल्फी ले रहा है मिरर में।